यहाँ पर मुझे कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के हैं।

और बहुत बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं और कुछ कुर्सियाँ दिखाई दे रही हैं जो ब्लैक कलर की हैं और कुछ राउंड शेप के टेबल दिखाई दे रहे हैं।

और एक येलो कलर का है और एक व्हाइट कलर का है और ऑरेंज कलर का है।

बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के है और दो ऑटो दिखाई दे रहे--

यहाँ पर मुझे एक हॉल जैसा बड़ा सा रूम दिखाई दे रहा है जो वाइट कलर का है।